तीन लड़कियां दिखाई दे रहीं।

एक लड़की ने सफेद रंग की टी शर्ट --

इस तस्वीर में दो--

एक्टिवा भीं दिखाई दे रहीं--

यह तस्वीर एक बैंक की--

आदमी ने सफेद रंग की--

इस तस्वीर में एक--

सामने तस्वीर में गुलाब के--

कई तरह के जूते--

दे रहीं हैं जोकि अलग अलग रंगों तथा प्रका --

हरियाली दिखाई दे रही है।

की हैं और एक मोटरसाइकिल भीं खड़ा हुवा--